और साइड में बहुत सारे कार खड़े किए गए हैं कुछ लाल तो कुछ सफेद हैं।

एक लाल कलर के बस है और एक ब्लू और सफेद कलर के।

इसमें से यहां पर दो एक व्यक्ति जो है हाथी पे चढ़ा हुआ है।

उसने उसके ऊपर गमछा भी रखा है।

एक यहां पर दो टेबलें भी है।

और उधर सूर्य की किरणे आ रही है।

यह एक किसी शादी के कार्यक्रम का दौरान लिया गया फोटो है।

और उधर बहुत सारे पंडाल बनाए गए हैं बड़े बड़े बहुत सारे लाइटें लगाई हैं।

इसमें से यहां पर बहोत सारे बलूंस लगाए हैं।

टी_शर्ट पे लिखा है ए मैन एक्सचेंज और उधर ड्रेसेस बहोत सारे रखे हैं।

बगल में मेला जैसा भी लगा है।

हां यह किसी पेट्रोल पंप का फोटो है।

यह एक किसी फैक्ट्री का फोटो है।

यहा ये किसी बहुत बड़ा बिल्डिंग का फोटो है।

इसमें से यहां पर बहुत सारे कुर्सियां और शीशे की गेट्स बनाए गए हैं।